मूर्तियां बहुत सुंदर दिख रही हैं।

इसमें एक नर्सरी दिख रही है।

इस पिक्चर में तीन मूर्तियां दिखाई दे रही हैं बीच में बड़ी मूर्ति है।

यह मूर्ति महात्मा बुद्ध की है।

पीछे एक घर दिख रहा है।

उस पर इंडेन सोलंकी गैस सर्विस लिखा हुआ है।

एक टैंपो भी दिखाई दे रहा है।

दो कार्टून दिखाई दे रहे हैं और कुछ इसमें--

उसके अंदर नीला नीला पानी दिख रहा--

इस पिक्चर में एक लकड़ी का बक्सा दिख रहा है।

यह एक दुकान दिख रही है इसमें तीन औरतें दिखाई दे रही हैं इसमें कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

नीचे दो दुकानें हैं एक दुकान बंद हैं।

उसने चेक वाली शर्ट पहनी हुई है।

इसको काफी सुंदर सजावट की गई है।

इसकी सजावट कई तरह की लाइटों से की गई है।

आस पास हरी भरी झाड़ियां दिख रही हैं।

एक तरफ कैमरा दिख रहा है।

एक दुकान का शटर बंद है जिसका रंग सफेद है।

और उसके अंदर इसके बारे में--

इसमें एक सोफा और दो कुर्सियां है।

पीछे एक दीवार है जो गुलाबी रंग की हैं।

उस पर एक पोस्टर लगा हुआ है।

ऊपर झूमर भी लगे हुए हैं।

एक स्कूटी हैं दोनों काले रंग की हैं।

इसमें एक बहुत बड़ा हॉल दिखाया गया है।

कुछ लड़के गेट के बाहर खड़े हैं।

इसके अन्दर एक टेबल दिखाई दे रहा है।

इसमें लाल नीला और गुलाबी रंग के वास हैं।

कुछ आदमी भी दिखाई दे रही है।

इस सोफे को अच्छे से पॉलिश किया हुआ है।

एक पिलर भी दिखाई दे रहा है।

उसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी है।

इन मशीनों में बटन लगे हुए हैं।

एक जमीन में लोहे के कुछ जालियां बनी हुई है।